पाइप दिखाई दे रही है यहां पर कुछ डब्बे भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक जेवर की दुकान प्रतीत होती है।

यहां पर एक टायर भी दिख रहा है और ये एक दुकान है।

यहां पर कुछ किताबें दिखाई दे रही है।